ये चाट का दुकान है इसमे चाट है।

एक आदमी के हाथों मे चाट का प्लैट है चमच्च है |

यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं झरना है।